घर कितना अच्छा दिख रहा है नीचे तरफ भी घर का भी और ऊपर बल्ब --

--झील है यहाँ पे बहोत ही हरा भरा दिख रहा है इसको भी लग रहा है बलर किया गया है।

यहाँ पर कपड़ा-वपड़ा सब अच्छे तरह से सजाया गया हैं बहुत ही अच्छा दिख रहा हैं यहाँ पे टेबल कुर्सी-उर्सी पूरा सजाया लग रहा हैं की इंहा पार्क उर्क बन रहा हैं।

भिंडी हैं बहुत ही हरा-भरा दिख रहा हैं इसे लगाया गया हैं बहुत ही भिंडी की खेती किया जाता हैं बहुत ही भिंडी हैं बहुत सारा भिंडी हैं एक-दो पेड़ में बहुत सारा बिसरारु भिंडी हैं।

इतना अच्छा खुर्सी-वुरसी दिख रहा है लाइट -वाइट दिख रहा है सब पार्द-वरदा लगाया हेगा लग रहा है की यहाँ शादी बियाह का भी माहौल होगा।

यह देख के लग रहा है की तू तू है और यहाँ पे झींगा उंगा सब बर्फ में निचे बिछा दिया गया है वहा पे जाल के माध्यम--

से बोहत सारी चीजे बिछाई है वहा पे रेहु कतला ये सब मछलीया बोहत सारे बड़े बड़े दिख रहे है इस ट्रे में कर दिया गया हैं।